यहाँ पर सामने में एक कार खड़ी हुई है जो की वाइट कलर की हैं।

दिखाई दे रही है नीचे में एक जेंट्स का पैर दिखाई दे रहा है एक स्कूटी दिखाई दे रही है नीचे में गिट्टियां भी दिखाई दे रही हैं।

चीजें दिखाई दे रही हैं और ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस में मदर देरी लिखा हुआ है और एक गाय दिखाई दे रही है दूध का ग्लास दिख रहा है ।

चका दिखाई दे रहा है बाहर में --

और यहाँ पस पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं और छोटे-छोटे घास भी लगी हुई है।

एक झोपडी जेसा दिख रहा है पीछे में बहौत सारे पेड़-पोधे दिखाई दे रहे हैं आगे में भी पेड़-पोधे दिखाई दे रहे हैं।